नमस्कार लिबर ऑफिस राइटर में स्थानीय भाषाओं में टाइपिंग पर इस टयूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में मैं आपको लिबर ऑफिस राइटर के साथ कन्नड़ में टेक्स्ट प्रोसेसिंग प्रसंस्करण से परिचित कराऊँगा
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
अब मैं बताऊँगा कि आप लिबरऑफिस में कन्नड़ टाइपिंग कैसे कंफिगर कर सकते हैं
आप इस पद्धति का उपयोग लिबरऑफिस में किसी भी भाषा को कंफिगर करने के लिए कर सकते हैं
पैकेजस को संस्थापित करने के लिए सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करें
विवरण के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर ट्यूटोरियल को देखें
कन्फिग्रेशन चार स्टेप्स में होता है
जाँचें यदि सीआईएम आपके कंप्यूटर में संस्थापित है
यदि नहीं तो निम्न पैकेजेस को चिन्हित करने के लिए और सीआईएम को संस्थापित करने के लिए सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करें
ट्यूटोरियल को रोक दें जब तक आप यह कर रहे हैं और जब हो जाय तब रिज्यूम करें
आगे कीबोर्ड इनपुट पद्धति के रूप में scim इमोड्यूल को चुनें
टेक्स्ट इनपुट के लिए भाषा के रूप में कन्नड़ का चुनाव करने के लिए सीआईएम कंफिगर करें
कॉम्पलेक्स टेक्स्ट लेआउट के लिए कन्नड़ का चुनाव करने के लिए लिबरऑफिस को कंफिगर करें
मैं अब इन स्टेप्स का प्रदर्शन करूँगा
सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और लैंग्वेज सपोर्ट पर क्लिक करें
यदि आपको स्क्रीन पर रिमाइंड मे लेटर या इंस्टॉल नोव मिलता है तो रिमाइंड मे लेटर पर क्लिक करें
कीबोर्ड इनपुट मैथड़ सिस्टम में scim इमोड्यूल को चुनें
यहाँ यह पहले से ही चयनित है तो हम कुछ नहीं करेंगे
तीसरा सीआईएम को कंफिगर करने के लिए सिस्टम प्रेफरेंस और सीआईएम इनपुट मेथोड पर क्लिक करें
अभी आप इसे स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं
लेकिन जब आप इसे अपने कंप्यूटर पर करेंगे तो आप इस ऑप्शन को देखने में सक्षम होंगे
इमेंजिन में ग्लोबल सेटअप पर क्लिक करें
सीआईएम इसके द्वारा टेक्स्ट प्रोसेसिंग में समर्थित सभी भाषाओं की सूची दिखायेगा
इसमें हिन्दी कन्नड़ बंगाली गुजराती तमिल तेलुगू मलयालम उर्दू आदि सहित ज्यादा बोली जाने वाली भारतीय भाषाएँ होती हैं
हमारे ट्यूटोरियल के लिए हिन्दी और कन्नड़ चयनित होनी चाहिए
अपने कंफिगरेशन को सेव करने के लिए ओक पर क्लिक करें
सीआईएम के बदलावों से प्रभाव हुआ है इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें मशीन को पुनः आरंभ करना होगा
ऐसा करें और इस ट्यूटोरियल पर वापस आएँ
अब हम लिबरऑफिस में कन्नड़ प्रोसेसिंग कंफिगर करेंगे
एप्लिकेशंस आफिस और लिब्रियोफिस राइटर पर क्लिक करें
हम मुख्य मेन्यू में टूल्स और ऑप्शन में उप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
आप ऑप्शन्स डायलॉग बॉक्स देखेंगे
इस बॉक्स में हम लैंग्वेज सेटिंग्स और फिर लैंग्वेज आप्शन पर क्लिक करेंगे
कॉम्पलेक्स टेक्स्ट लेआउट के लिए सक्रिय चेक बॉक्स पर क्लिक करें यदि यह पहले से ही चुनित नहीं है
कृपया सीटीएल ड्रॉपडाउन से कन्नड़ का चुनाव करें
डिफॉल्ट रूप से यह कन्नड़ के लिए आपकी लोकल लैंग्वेज सेटिंग सेट करेगा
ओक पर क्लिक करें
हम अब कन्नड़ और अंग्रेजी में एक वाक्य टाइप करेंगे
हम बराहा पद्धति नुदी पद्धति और यूनिकोड फॉन्टस का उपयोग करेंगे
हम अन्ततः फाइल को सेव करेंगे
अब मैं इसे प्रदर्शित करता हूँ
खुले टेक्स्ट डॉक्युमेंट मेंUbuntu gnuलिनक्स सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज विथ लिब्रियोफिस
टाइप करें
कंट्रोल की को पकड़कर रखें और स्पेस बार को दबायें
स्क्रीन के नीचे दायीं ओर पर एक छोटा विंडो खुलता है
साधारण ध्वन्यात्मक पद्धति जो कि बराहा पद्धति के समान है इसमें टेक्स्ट इनपुट करने के लिए कन्नड़ kn इट्रांस को चुनें
यदि नुदी कीबोर्ड लेआउट चाहते हैं कन्नड़ा - कोन केजीपी पर क्लिक करें
मैं kn इट्रांस इनपुट पद्धति का उपयोग करूँगा
जो कि सरल है और इसीलिए शुरूआत के लिए आसान है
सार्वजनिका तंत्रांश अंग्रेजी में टाइप करें
आप देखेंगे कि कन्नड़ टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है
कंट्रोल की को पकड़कर रखें और स्पेस बार दबायें
विंडो गायब हो जाता है
हम अब अंग्रेजी में टाइप करेंगे
इस प्रकार कंट्रोल की प्लस स्पेस बार हमें अंग्रेजी और अन्य चयनित भाषा के बीच में जाने में मदद करता है
कृपया अर्कावथु का उपयोग करके नुदी में टाइपिंग सहित कन्नड़ में टाइपिंग के बारे में विशेष जानकारी के लिए wwwPublic SoftwareinKannada पर उपलब्ध कन्नड़ टेक्स्ट प्रोसेसिंग पर आधारित डॉक्युमेंट को देखें
हम केवल यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग करेंगे जब भारतीय भाषाओं में टाइपिंग कर रहे हों
क्योंकि यूनिकोड सर्वत्र स्वीकृत फॉन्ट है
लोहित कन्नड़ यूनिकोड फॉन्ट है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ
कृपया ध्यान दें कि मैंने आपको कन्नड़ टेक्स्ट प्रोसेसिंग दिखाई है
लिबरऑफिस राइटर का उपयोग करके सीआईएम इनपुट पद्धति के तहत किसी भी भाषा में टेक्स्ट टाइप करने के लिए इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है
आखिर में नियत कार्य
कन्नड़ में तीन किताबों की सूची टाइप करें
टाइटल्स का अंग्रेजी लिप्यंतरण प्रदान करें
मैंने यहाँ नियत कार्य पहले से ही तैयार किया हुआ है
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कीबोर्ड और भाषा की सेटिंग्स के लिए लिबरऑफिस और उबंटु को कैसे कंफिगर करें
हमने यह भी देखा कि विभिन्न पद्धतियों में कैसे टाइप करें उदाहरणस्वरूप बराहा और नुदी
हमने देखा कि द्विभाषी डॉक्युमेंट कैसे टाइप करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट स्पोकेन हाइपेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर संपर्क करें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
स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइपेन इंट्रो लिबरऑफिस राइटर में कई भाषाओं के अन्वेषण का आनंद लें
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँधन्यवाद